इस तस्वीर में नीचे मछलियां नजर आ रही है मछलि के नीचे लाल रंग की चादर दिख रही है।

जिसमें कुछ व्यक्ति पानी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं पीछे पूरे झूले लगे हुए हैं।

कई व्यक्ति खड़े हुए है ऊपर स्टार लगा हुआ है।